इसके बीच येलो और रेड कलर का बोर्ड लगा हुआ है।

साइड में ल डार्क ब्राउन और क्रीम कलर से डिजाइन बनी हुई है।

कुछ लोग खड़े हुए है गार्ड बैठा है।

यहां पर चेयर्स और टेबल्स पड़ी हुई है जिन पर रेड और येलो कलर का कपड़ा चढ़ा हुआ है।

और बहोत सारे लोग बैठे हैं बहोत सारे लोग खड़े हैं।

सामने एक आदमी जा रहा है जिसने रेड कलर का बैग टांगा हुआ है।

ये जगह एक के नीचे है जहां लोग इक्कठे हुए है।

एक दुकान के बोर्ड पर प्रगति बुक सेंटर लिखा हुआ है जो की ब्लू कलर का है।

एक आदमी तागे में तागे में फूल डाल रहा है।

के सामने एक बस खड़ी हुई है पीले कलर की जो स्कूल की लग रही है।

व्हाइट कलर की लाइट्स भी लगी हैं जो जल रही हैं।